और काफी ज्यादे अच्छे देखने में लग रहे है बहुत ही सुन्दर लग रहे है।

अच्छे दामों में मिलते हैं सस्ते में मिलते हैं वो लोग खरीद के ले जाते हैं घूमने के लिए आते हैं |

यहां पे हमलोग आते है ।

बहुत ही आते हैं और घुर के जाते हैं।

यहाँ पे हमलोग आते है और सैलून में बाल कटाते हैं।

और काफी ज्यादे अच्छे काटते हैं।

अच्छे देखने मे भी लग रहे है ।

काफी ज्यादा अच्छे है बहुत ही सुन्दर लग रहे है देखने मे --

और एक आदमी भी लगी हुई है।

और हमलोग आते हैं नहाते हैं और घूमते हैं घूमने फिरने --

सुन्दर भी लग रहे है काफी ज्यादा अच्छे बहुत ही भीड़ लगे है ।

और हिरन भी है और हिरन के बच्चे भी।

बहुत ही सुन्दर लग रहे है हरे-भरे भी लग --